यांका पिछाड़ी बिटिन आप ता बहोत सारा लोग भी होला दिखेणा जू की भैर भीतर छन जाणा पिछाड़ी बिटिन आप त एक कॉलेज भी होलु दिखेण कू मिलण लग्युं।

जोकि फोटो पर नी दिखाईं यांका अगाड़ी बिटिन आप त एक आदमी होलु दिखेण लग्युं जोकि निकर मा चलण छ लग्युं।

जन कि यख मा जी आप तैं वेलकम गेट होलु दिखेण लग्युं यहां का फंडे बिटिन आप तैं बर-ब्योली की फोटो भी होली दिखेण लगीं जो की एक फ्रेम पर छ लगाईं।

याँका एैंच बटिन आपथे एक प्लेट होल दिखेण लगी काली कलर की याँका एैंच बटिन एक डिश छा जाँका उंडा फंडे बटिन आपथे द्वी चम्मच भी होल दिखेण लग्यां।

उल्टी छन करीं पिछाड़ी बिटिन आप तें मोटा मोटा ढुंगा अर हरयां भरयां पेड़ पौधा भी होला दिखेण क मिल लग्यां।

स्विमिंग पूल की जख मा जी बच्चों का ख्योलाणा के खातिर आप त सारी चीज़ होली दिखेण रखीं।

स्लाइड झूला पिछाड़ी बिटिन आपतैं हरा-भार्यां पेड़-पौधा और कुछ लोग और घर भि ह्वला दिखेणी कु मिन लग्यां।